गाइज ये दिखये ये पानी है सूरज एए सूर्य ढल रहा है बगल में पहाड़ है पेड़--

यहाँ चार गो बेंच है यहाँ तीन ठो आदमी दो आदमी बैठा हुआ है।

और स्वेटर जैकेट वेकेट पहन के सब लोग चल रहे है बस पे सफर कर रहे है अच्छा से और ये देखिये यहाँ पर रुके के अपना चाय पानी जो भी--

और तीन चार यहां बगल में टंकी - वांकी सब लगाए गया है।

बहुत सारा लाल - लाल कलर का बैलून बहुत सारा लगाया गया है बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है रिबन से रिबन भी लगाया गया है लड़का फोटो भी खींचा रहा है टोपी पहना है लड़का का शर्ट पहना है पेंट पहना है।